यह एक बिल्डिंग है यह बिल्डिंग बहुत बड़ा ग्रिल गेट लगा हुआ है यह बिल्डिंग बहुत अच्छे दिखते है ग्रिल गेट में कुछ लिखा हुआ है यह जगह बहुत अच्छा --

इस जगह को बहुत अच्छा सजाया गया है यहां काफी लाइटिंग किए हुए है एक बोर्ड बनाया हुआ है जो नाकसिक जॉन लिखा हुआ है यह जगह बहुत अच्छी दिखती --